एक सलून है ब्यूटी पार्लर जो होता है उसके अंदर का चित्र है यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई कस्टमर भी नहीं है।

उसके सामने एक लड़का खड़ा हैं जीन्स टी_शर्ट पहन के--

यहाँ पे एक नोदी दिखाई दे रहा है नोदी में बड़ा नदी है बहोत सारा पानी है उसके ऊपर कुछ बोर्ड रखा--

बहोत सारे वाइट कलर का रेड कलर का और सभी की जगह पे सजा के रख दिया है।

ये एक पेट्रोल पंप है और ऑयल पेट्रोल पंप जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है लिखा है इंडियन ऑयल --

यहाँ पे एक प्लॉट दिखाई दे रहा है जो वहाँ पे इंजिनीअर का काम हो रहा है यहाँ पे इंजीनियरिंग का एक कोडिंग लिखा हुआ है।

कम्पलीट पेट सब मिलता है यहाँ पे बिल्ली वगेरा मछली और--

यहाँ पे बड़ा सा एक पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे गेट का जो एंट्री होता है यहाँ पे म मतलब लोहे का एक गेट का एक चित्र दिखाई दे रहा है।

सामने तरफ मुह करके दो ट्रक पीछे तरफ मुह करके खड़ा है सामने तरफ जो ट्रक मुह करके खड़ा है वो वाइट कलर का --

ये कोटम वाइड वर्क शॉप है जहाँ पे गाडी सराई होता है यहाँ पे एक चार चक्का गाडी या--

ये एक रास्ता है पिचों का रास्ता है जिसके पास में एक गाड़ी खड़ी है जो सामान वगैरा गाड़ी वगैरा और भी चीज--

में बहुत सारे सामान हैं जैसे हैंडवाश सर्फ़ वगैरा एक ग्रोसर्री का दुकान लग रहा है यहाँ पे सैंडल वगैरा --

और भी मशीन वगैरा ये सब रखा हुआ है।

ये एक बेडरूम हैं जिसमे एक किंग साइज़ बेड है।

और फ्रीज ए_सी भी है यहां पे विंडो ए_सी --

जो मार्ट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक रायन रॉयल एनफील्ड कार बाइक खड़ी है।

उसमे एक पैकेट में बाजू में केबल दिखाई दे रहा है उसके पास में एक वाइट कलर का मेसिंग भी है जो--

यहाँ पे एक खुला हुवा दुकान दिखाई दे रहा हैं दुकान का गेट कांचों का हैं।

ये दुकान का नाम है चौधरी प्लाईवुड ये प्लाईवुड का चीज़ मिलता है और भी सामान मिलता है जो प्लाईवुड बनाने के लिए जो घर में--

रखा है नीचे वाला बैठने वाला ओ उसके ऊपर पढ़ाई करने वाला जो बेंच होता है--

यहां पे पार्क है पार्क के ये ढलाई रस्ता है रस्ते के पास काठों का बैठने का चेयर है उसके पास डस्टबिन का एक डिब्बा है।

और ओ लैट्रिन का और भी बंगोली लैट्रिन और प्लाई और भी टाइल्स मार्बल ये सब चीज़े यहाँ पे बिकता है।

यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल के सामने यहाँ पे एक राउंड करके एक सुंदर सा गेट लगाया हुआ है गेट बहुत सुंदर है।

एम_जी_ओ ऑटोमोबाइल का शॉप है यहाँ पर ऑटोमोबाइल का टायर मिलता है गाड़ी का बड़ा बड़ा छोटा छोटा गाड़ी का यहाँ पे सामने वाइट कलर का मारुती कार खड़ा है।

आजू बाजू रैक है उसमें बहुत सारा सब ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक माजा ये सब चीज का रखा हुआ है सामने टेबल में बहुत सारा फ्रूटी माजा --